लाइन में लगे हैं यह सुबह का अ अ दृश्य दिख रहा है।

दोनों स्लाइड गोल-गोल जा रही है दोनों का कलर एक और ब्लू है।

तबला बजा रहा है एक महिला के हाथ में गुलदान है और एक महिला कुछ गा रही है।

और एक कुछ आगे के तरफ बढ़ रहा है और उसके साइड में --

देखने पर ऐसा लग रहा है की यह किसी जैन महाराज की मूर्ति है जो की --

इसमें खाली कुर्सियाँ दिख रखी हैं जो की रंगीन है।

और यह दिन का दृश्य है सामने की तरफ एक --

स्कूल का एक लोगो भी लगा हुआ जिस पर क्रॉस का निशान है नीचे की तरफ एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है और --

कपड़े पहने हुए हैं जो की सफाई कर रहा है साथ में एक कुर्सी भी दिख रही है एक कार भी है।

यहाँ पर एक आदमी एस.बी.आई. के ए.टी.एम. से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है।

और कोई बेकरी की शॉप भी हो सकती है।

यह किसी पार्किंग का दृश्य दिख रहा है जहाँ पर --